खेत मे कुछ पानी दिखाई दे रहे हे ओर कुछ पेड़ पोधे दिखाई दे रहे हे ओर कुछ मकान भी --

यह एक कपड़े की दुकान दिखाई दे रही है।